कांच में भी गुलदस्ता और गिफ्ट रखा हुआ है।

इसके बाहर भी फ्लावर का डेकोरेशन किया गया है।

एक आदमी हेलमेट पकड़ा हुआ है।

और इसके पीछे एक होटल है उस होटल का दरवाजा शीशा का है।

और सीलिंग में बहुत सारे पंखा लगा हुआ है और टाइल्स लगा हुआ है।

और एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें रेस्पेक्टेड लिखा हुआ है।

इसके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ है।

इस फोटो में बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो कि जिम का है।

और नीचे कारपेट भी बिछाया हुआ है और एक खिड़की है।

इस फोटो में एक बहुत बड़ा हॉल है।

और औरत भी है इसमें।

यह फोटो स्टेशन का है।

और एक ए_सी लगा हुआ है दीवार मे भगवान का फोटो लगा हुआ है।

और साइड में एक खिड़की है।

वो टेबल बैठने के लिए है।

यह एक दुकान का फोटो है जिसके बाहर बहुत सारे समान टंगा हुआ है।

वह आदमी अपने चेस्ट पर ब्लू रंग का तोलिया लिया हुआ है।

एक आदमी का हाथ भी दिख रहा है।

एक टेबल पर पेपर रखा हुआ है एक लड़की का हाथ दिख रहा है हल्का सा और हल्का सा बाल भी दिख रहा है।

मकान है जिसके अंदर जाने के लिए सीढ़ी बना हुआ है।

और एक पंखा है जो हल्का सा दिख रहा--